इस दृश्य में हमें एक ऑफिस के बाहर का नजारा देख सकते हैं।

ऑफिस चारों ओर से पेड़ पौधों से भरा हुआ है।

कॉलेज के अंदर कुछ गाड़ियां देख सकते हैं।

चित्र में हम एक क्रिकेट स्टेडियम देख सकते हैं।

इस चित्र के दौरान अभी दिन का वक्त हो रहा है।

इस तस्वीर में हम एक पोस्टऑफिस देख सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस के बाहर कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

चारों ओर से पेड़ पौधों से भरा हुआ है।

सैलून के अंदर वाइट कलर किया हुआ है।

इस दृश्य में हम बहोत सारे कैप्यूस देख सकते हैं।

इस चित्र के दौरान अभी दिन का वक्त हो रहा है।

इस दृश्य में हम एक सैलॉन का नजारा देख सकते हैं।

सैलून के अंदर एक बहोत बड़ा शीशा लगा हुआ है।

गार्डन के चारों ओर नेट के जाल लगे हुए हैं।

इस दृश्य में हम दो दुकान का नजारा देख सकते हैं।

दुकान के बाहर एक आदमी कॉल पर बात कर रहा है।

इस दृश्य में हम एक दुकान का नजारा देख सकते हैं।

इस दृश्य में हम एक स्कूल का नजारा देख सकते हैं।

इस तस्वीर में हम एक होटल का दृश्य देख सकते हैं।

इस तस्वीर के दौरान अभी दिन का वक्त हो रहा है।